यह एक जिम का फोटो है जहापर बहुत सारे टूल्स है जिनपर येल्लो पेंट हो रखा है और ब्लाक पेंट हो रखा है एक आदमी अपनी सेल्फी ले रहा है और बाकी लोग एक्सरसाइजेस अँड वर्कआऊट कर रहे है।

यह एक जिम का प्लेस लगता है जहा पर एक अम एक लड़का अपनी बॉडी अ अपने बाइसेप्स दिखा रहा है और पीछे काफी सारे टूल्स रखे है और ये एक होममैड जिम लगता है।

उनके यहा पर एक इंडियन पोस्ट भी है जो कि ट्वेंटी फोर अवर्स खुला है उसके आस-पास काफी लोग अ आ जा रहे है ।

ये एक मार्केट का व्यू है जो कि थोड़े ऊपर से लिया गया है और ऊपर से हम देख सकते है कि यहाँ पे काफी भीड़ है।

और यहा पर काफी अ रिसिप्टस अ र अ मतलब फेंकी गई है और काफी लोग अंदर वेट कर रहे है।

बाहर एक रीसेप्शन बनाया गया है और बैठने के लिए लोगों कि सुविधा है और अंदर जाकर लोगों का अपना हैयर कट और जो भी वो करवाना --

और यहा पर काफी लोडिंग टेम्पोस भी है और बसेस भी यहा पर आ रही ज है।

यहा एक बस है। बस मे काफी लोग ऊपर बैठे हुए है काफी लोग अंदर चढ़ रहे है। आसपास ही काफी वेहिकल्स आ-जा रहे है और यह एक मार्केट का एरिया लगता है।